और बोर्ड में तीन रंग है सफेद हरा नीला।

बच्चे क्रिसमस की टोपी पहने हैं और सफेद रंग का ड्रेस पहने हैं।

ये बच्चियां घर के ड्रेस में आई है।

जिसमें से एक थम्स अप की और एक बिसलेरी की बोतल है।

ट्रैक के बगल में लाल रंग का छोटा छोटा दो कमरा बना हुआ नजर आ रहा है।

इस पार्क में बहोत सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं।